जोकि बोहोत बड़ा और बोहोत ही सुन्दर है।

यहां पर एक बहुत बड़ा सा घर बना है जिस को--

अमं देख सकते हैं की--

इस पिक्चर में हम देख सकते है कि--

ये देख सकते हैं कि यहां पर एक बहोत बड़ा सा--